एक सिनेमा के बाहर का है जिसका नाम है डॉन सिनेमा ।

यह एक डेम है। डेम के गेट खुले हऐ हैं उसमे से पानी निकल रहा है।

पीले कलर का है और ऊपर से एक रोड भी गई हुई है जाने के लिए।

शोरूम है जिसमें तीन से चार बाइक खड़ी हुई हैं।

रोड गई हुई है। रोड के आगे भी बोहोत सारे के पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे एक का कार्पेट भी बिछा हुआ है और लाइट लगी हुई हैं।

जमीन टूल्स रखे हुए हैं। मशीन रखी हुई है। बल्ब लगा हुआ है। काली दीवाल है।

दो आदमी काम कर रहे हैं।

अंदर पोस्टर लगा हुआ है यू.पी.एस.सी का और बल्ब लगा--

एक बच्चा भी खड़ा हुआ है बाहर की तरफ--

एक बहुत बड़ा होटल है। जिसमें लाइटिंग लगी हुई है। शादी का डेकोरेशन हो रहा है।

महल एक खंडर हो चुका है महल में बहुत सारे खिडकी--

स्लाइड में ब्लू कलर का डंडा लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग है बहोत(बहुत) बड़ी।

ये एक पार्लर का फोटो है। पार्लर में एक बच्ची बैठी हुई है।

यह एक पार्किंग एरिया है पार्किंग एरिया में दो कारे खड़ी हुई है।

एक घड़ी लगी है। हरे कलर का पर्दा लगा हुआ है।

कार पूरी तरह से टूटी हुई है। आगे का हिस्सा टूटा हुआ है।

छठ की पूजा कर रहे हैं। कुछ औरतें डलिये में भी बैठी हैं।

पीछे लोहे का एक गेट है बगल में एक --

शादी के लिए भी ऊपर बहुत सारे डे --

पीछे एक केवार्ड बना हुआ है जिस पे कुंडी भी लगी हुई है सफेद कलर का --

एक लड़की को अवार्ड दे रहा है और बोहोत सारे लोग पीछे उस --

ताकि पाठशाला ऊपर पेड़ भी लगा हुआ है।

ये फोटो बहुत ऊंचाई से लिया गया है।

कोई सेम पोस्टर लगा हुआ है नीचे एक कुर्सी रखी हुई है बगल में एक बाइक खड़ी हुइ है।

बोहोत सारी बोहोत बड़ी-बड़ी नाव खड़ी हुई हैं।

बहोत से लोग बैठे हुए है कुछ खडे हुए है।

हॉल के अंदर बहौत सारे लोग हैं जोकि --

एक टैंकर भी खड़ा हुआ है बहुत सारी बाल्टियां रखी हुई जिसमें सामान--